यहां पे टेबल पे बहोत सारे लैपटॉप --

यहां सामने जाली हैं और उसके ऊपर यहां पे कपड़े सुखाए जा रहे हैं।

पॉट रखा हुआ है फूलों का आजू में यहां ए--

ये एक यहां पे बेडरूम दिख रहा है।